दुकान में ढेर सारी किताबें कॉपियां और स्टेशनरी सामान पेन पेंसिल है।

कुछ ग्राहक दूकान के बाहर खरीदते हुए सामान नजर आ रहे हैं।

दुकान के बाहर एक सूचना बोर्ड भी लगा है।

इस तस्वीर में एक पूजा पंडाल दिखाई दे रहा है जिसमें मां सरस्वती की मूर्ति अस्थपित की गई है।

चारों ओर रंग बिरंगे पर्दों और तिरंगे रंग के गुब्बारों से सजावट की गई है।

कुछ लोग पूजा के दौरान पंडाल में बैठे हैं बाईं और एक लैपटॉप और स्पीकर सिस्टम भी दिखाई दे रहा है।

कमरा के दीवाल में खिड़की बनी हुईं हैं।

कमरा के दीवाल का कलर सफेद है।

मकान में बहुत सारे बांस लगे हुए हैं।

मकान के ऊपर एक पिलर है बड़ा सा जिसका --

ताजा घास या चरी हो सकता है दृश्य पशुपालन गाय की देखभाल को दर्शाया --

इस तस्वीर में एक पारंपरिक धार्मिक जुलूस नजर आ रहा है।

पीछे एक सुंदर और रंग बिरंगे वाली झांकी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में लोग नाव में बैठ कर नौकायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चारों ओर हरे भरे पेड़ और झाड़ियां है।

मौसम साफ और धूप भड़ा है।

झींगे समुद्री भोजन की एक लोकप्रिय किस्म है।

ये झींगे अभी साफ और पकाने के लिए तैयार नहीं किए गए हैं।

इन्हें धोकर मसाले में मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है।

कमरा में बहोत सारी औरतें योगा कर रही है।

सभी लोग पारंपरिक और साधारण कपड़ों में है।

कुछ महिलाएं साड़ी और सूट में हैं और बच्चे भी इस फोटो में शामिल हैं।

इस तस्वीर में एक बच्चा बगीचे में पाइप से पौधों को पानी दे रहा है।

बच्चा लाल टी शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहने हैं।

बागीचे में कई फूल और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

पीछे एक सफेद रंग का मकान और कुछ पेर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सरकारी कार्यालय की इमारत है।

एक महिला अपने बच्चों को गोद में लेकर भवन की ओर जा रही है।

गेट के पास एक सूचना पट भी लगाया गया --

इस तस्वीर में एस_बी_आई बैंक का ए_टी_एम केन दिखाई दे रहा है।

भवन के पास कुछ लोग इधर उधर घूमते नज़र आ रहे हैं।

कई लोग डाकघर के बाहर खड़े हुए हैं जिन में महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहने हुए हैं।

कुछ लोग डाकघर के अंदर सेवाएं लेने जा रहे हैं।

यहां कई रैक में सैकड़ों किताबें व्यवस्थित ढंग से रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक स्थानीय बाजार का दृश्य दिख रहा है।

जमीन पर बैठी महिलाएं ताजी हरी सब्जियां बेच रही है।

सभी कपड़े प्लास्टिक में पैक किए गए हैं ये तस्वीर शायद किसी दुकान की है।

अस्पताल के बाहर तीन चार आदमी खड़े हैं।

अस्पताल के बाहर एक बाइक खड़ी हुईं हैं।

हॉल के दीवाल पर बहोत सारी खिड़की बनी हुई है।

तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान है।

कमरा की दीवाल व्हाइट कलर की है।

इस तस्वीर में कैफे का दृश्य दिख रहा है।

दीवारों पर सुंदर चित्र और कॉफी से संबंधित डिजाइन बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक फेडरल बैंक की शाखा दिखाई दे रही है जो एक बड़ी और आधुनिक इमारत में स्थित है।

बैंक के साइन बोर्ड पर अंग्रेजी और कनण भाषा में नाम लिखा हुआ --

सामने की सड़क पर कुछ बाइकें खड़ी है और एक वाइट कार भी खड़ी है।

तस्वीर में एक सुंदर तरीके से सजा हुआ फूड प्लेटर दिखाई दे रहा --

प्लेट में चार तंदूरी स्टार्टस रखे हुए है जिनके सिरे फॉयल से लपेट हुए --

यह एक एयरटेल का अधिकृत स्टोर है स्टोर के बाहर एयरटेल का लोगो और नाम दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर कुछ लोग बैठे हैं।

एक व्यक्ति दुकान के सामने खरा हुआ है।

पेड़ और हरियाली से घिरा यह स्थान किसी ग्रामीण इलाके का प्रतीत होता है।

इस तस्वीर में एक छोटी किराने की दुकान दिखाई दे रही है।

अलमारीयो में कई तरह के खाने पीने के समान जैसे कुरकुरे बिस्किट है।

दाईं ओर एक फ्रिज रखा हुआ है जिसमें ठंडी चाज़ें जैसे आईक्रीम कोल्ड ड्रिंक है।

समान पैकेट में लटकाए हुए--

इस तस्वीर में दो पुरुष एक किताबों की दुकान या लाइब्रेरी में बैठे दिखाई दे रहे हैं।

दोनों व्यक्तियों ने चेक दार शर्ट पहन रखी हुई है।

यह तस्वीर एक लड़के की सेल्फी है जो किसी घर के मुख्य गेट के सामने खड़ा है।

ऊपर से ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी और चेरी से इसे सजाया गया आइसक्रीम एक कांच की कटोरी में रखी हुई--

इमारत के सामने लकड़ी का मचान लगाया गया है।

पास में एक मोटरसाइकिल खड़ी हैं।

यह तस्वीर एक हवाई अड्डे की है जहां एक व्यक्ति इंडिगो विमान के सामने खड़ा --

पीछे इंडिगो एयरलाइन का एक बड़ा विमान दिखाई दे रहा--

व्यक्ति ने हरे काले रंग की जैकेट पेहन रखी है विमान पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दी गई हैं।

दीवार पर कुछ सूचना बोर्ड ओर पोस्टर नजर आ रहे है।

यह दृश्य किसी बैंक या सरकारी कार्यालय का प्रतीत हो रहा--

इस तस्वीर में एक छोटा किराना या पान दुकान दिखाई दे रहा है।

दीवार पर कई तरह के पाउच जैसे पान मसाला गुटखा शैंपू लगा हुआ है।

एक तरफ की शेल्फ पर बोतल बंद पानी सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थ रखे हुए हैं दुकान का सेटअप बहुत ही साधारण है।

यह तस्वीर एक चर्च के अंदर ली गई है जहां कुछ लोग एक साथ खड़े --

बीच में एक पादरी और एक नन खड़े हैं जो की धार्मिक वस्त्रों में है।

पंडाल को रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से खूबसूरती से सजाए अंदर देवी की प्रतिमा स्थापित--

इस तस्वीर में कुछ छात्र एक कक्षा में कलर --

हेल्प का कार्य कर रहा --

इस तस्वीर मे एक मंच पर क्रिसमस समारोह हो रहा है।

बच्चे सांता क्लाज और परी जैसे परिधानों में सजे हुए हैं।

इस तस्वीर मे कई धातु के बने हुए पुर्जे या मशीन के हिस्से दिखाई दे रहे हैं।

ये एक कार्यालय या फैक्ट्री का दृश्य प्रतीत होता है जहां धातु पर काम किया जाता --

पीछे की दीवार पर औजार और उपकरण भी ल लटके हुए नजर आ--

यह तस्वीर एक बगुले जैसी पक्षी की है जो पानी में खड़ा है।

इस तस्वीर में बच्चों के कपड़ों की दुकान या स्टोर दिखाई दे रही है।

इनमें से कई कपड़ों पर कार्टून कैरेक्टर्स और डिजाइन प्रिंट किए गए हैं।

निचले हिस्से में कपड़े डब्बों पर लटके हुए हैं।

यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का दृश्य --

मंच पर रंग बिरंगी लाइटों के साथ प्रस्तुति चल रही है।

बहोत सारे लोग कुर्सियों पर बैठकर --

कार्यक्रम का आनंद ले रहे मंच को सुंदर सजावट और रोशनी से सजाया गया है।

यह तस्वीर एक स्कूल की इमारत की लग रही--

दीवारों पर कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की तस्वीरें और शैक्षणिक चित्र बनाए गए हैं।

इस तस्वीर में सी_यु_बी बैंक का एक ए_टी_एम केंद्र दिखाई दे रहा --

दो व्यक्ति ए_टी_एम के बाहर खड़े हैं ए_टी_एम का पूरा नाम सिटी यूनियन बैंक एल_टी_डी है।

तस्वीर में एक भारतीय रेल इंजन दिखाई दे रहा है।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

सूरज ढलने का समय है जिसे आसमान में सुंदर रोशनी फैली हुई है।

दो व्यक्ति दुकान के सामने खड़े हैं दुकान के आसपास साफ सफाई है हरियाली है।

बांध की दीवारें मजबूत और काले रंग की दिखाई दे रही है।

ऊपर के तरफ एक पुल है जिस पर लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

छ ग्राहक मछलियां देखना और खरीदने के लिए जमा हुए है।

मेज पर बड़ी छोटी और झींगा मछलियां साफ सुथरे से सजाई गई हैं।

मंदिर को फूलों और सजावटी कागजों से सजाया गया है।

पीछे एक छोटीसी देवता की मूर्ति या स्थान दिखाई दे रहा हैं।

यह एक साफ सुथरी कक्षा की तस्वीर है।

कक्षा में कई डेक्स और बेंच कई क्रम में लगी हुई --

इस तस्वीर में एक कक्षा का दृश्य दिख रहा है जहां कई छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

सभी छात्र अपनी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं।

शिक्षक व्हाइट बोर्ड पर कुछ जानकारी लिख रहे हैं।

कक्षा में अनुशासन और ध्यान केंद्रित माहौल नजर आ रहा है।

ऊपर की पंक्ति में एल_जी ब्रांड के टी_वी रखे हुए हैं।

यह स्थान ग्राहकों को टेलीविजन खरीदने के लिए प्रदर्शनी लगाया गया है।

तस्वीर में एक बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है।

इमारत के सामने का मैदान खाली है और वह कच्चा है जहां कुछ कपड़े सूखने के लिए टंगे हुए हैं।